हरा कलर दिख रहा है पीला कलर दिख रहा है सिहाई कलर दिख रहा है।

मंदिर दिख रहा है हरे पेड़-पौधे दिख रहा है।

दिखाई दे रहा है दीवाल दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है।

फूल दिखाई दे रहा है वॉचमैन दिखाई दे रहा है ।

टेबल दिखाई दे रही है कुर्सी दिखाई दे रही है ।

सुलेखा जेनरल स्टोर चार लड़कियाँ बैनर पे छपी हुई है दिखाई दे रहे ।